एक बड़े से मॉल का--

पौधों के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

और सेल्समेन महिला को बेच रहा दिख रहा है।

ईंधन भरवाने आए हुए हैं।

दृश्य दिख रहा है।

नाम के प्रोजेक्ट का बोर्ड लगा हुआ है।

पार्क किए हुवे दिख रहे हैं।

डेकोरेशन किया गया है।

बुटिक में लेडिस के कपड़े तैयार--

अलग अलग रैक पर रखे हुए दिख रहे हैं।

एक आइसक्रीम पार्लर का दृश्य--

काउंटर में लगे हुए हैं।

डिपार्टमेंट का ऑफिस दिख रहा है।